पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और इसी के पास एक ट्राली भी रखी हुई है।

उसके अंदर एक टी_वी भी लगी हुई है।

यहां सामने की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने एक घर दिखाई दे रहा है। जिसका रंग सफेद है।

यहां सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है।

के पाइप भी लगे हुए हैं और एक मशीन भी रखी हुई --

यहां सामने एक किला दिखाई दे रहा है।

यहां सामने की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ पुठे के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

यहां सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां सामने की तरफ एक कक्षा दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने एक सड़क दिखाई दे रही है।

यहां सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है।